ये अपने बाल को कटाने के लिए आए हुए हैं और कटा भी रहे हैं और जो भी इसका हेयरकट है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बढ़िया है।

इसका नाम है छठ पूजा ये एक बहुत ही मनमोहक पर्व है।

वो एक होलसेल बोला जाता है जो की बड़िया और यहाँ हर एक सामान मिलता है।

येलो कलर की रंग से रंगा गया है और पीछे एक सीढ़ी भी है और घर घर जो है वो शानदार दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया है।

को रिपेयर करने के लिए मिस्त्री रिपेयर कर रहा है उसको --

ये जो गाड़ी है ये बहुत ही ज्यादा मस्त है और इसका गाड़ी का कलर जो है वो वाइट है बहुत ही अच्छा है गाड़ी--